कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।

यू_के पत्थरों से बना हुआ दिख रहा है।

कुछ गमले दिखाई दे रहे हैं।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

और कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

कुछ लाइट्स दिखाई दे रही है। नाइट व्यू दिखाई दे रहा है।

दीवार पर पेंटिंग दिखाई दे रही है।

नाइट व्यू दिखाई दे रहा है कुछ बिजली की तारें दिखाई--

एक अलमीरा दिखाई दे रही है।

जिनके चेहरे पर ब्लर दिखाई दे रहा है।